इस दृश्य में हमें एक कॉलेज देखने को मिल रहा है हमें इस कॉलेज का नाम ऊपर नेम प्लेट पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

वोहीं हम यहां कुछ बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है देखने में यह बिल्डिंग काफी बड़ी बड़ी है और यह देखने में काफी सुंदर भी लग रहि है।

इस तस्वीर में हम कुछ पोस्टर्स देख पा रहे हैं वही हमें यहां पर कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है। इसके ऊपर बंगाली से हमें कुछ --

इस तस्वीर में हम एक बी.डी.यो. ऑफिस देख पा रहे हैं जिसके बाहर हमें वेलकम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वही हमें इसके मैन गेट पर--

अदर हमें एक घर देखने को मिल रहा है जो की देखने में एक ऑफिस लग रहा है उपर हमें कुछ नेम प्लेट भी लगे दिखाई दे रहे है।

साथी उसका नंबर भी यहां लिखा हुआ है देखने में यह काफी अच्छा लग रहा है। हमें यहां पर लाइटिंग भी की गई दिखाई दे रही है। मानो जैसे यहां दिवाली हो।

हॉस्पिटल का दृश्य है जहां हमें बहुत सारे बेडस दिखाई दे रहे हैं इन सारे बेड पर नीले रंग का चादर बिछाया गया है और हर बैड के साथ हमें एक पर्दा लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

के एक हॉस्पिटल के अंदर का है जहाँ हमें रिसेप्शन हॉल देखने को मिल रहा है। देखने में ये रिसेप्शन हॉल काफी बड़ा है हमें काउंटर पर एक आदमी कंप्यूटर लेके बैठा नज़र आ रहा है।

हमें बाहर में कुछ टोटो भी खड़े दिखाई दे रहे हैं साथ हि हम यहां कुछ लोगों को भी देख पा रहे हे हैं देखने में इए दृश्य अच्छा लग रहा है।